बहुत ही सुंदर नजारे है जोकि नदीया के बीच हमे सोने के लिए पैराशूट बहुत ही अच्छा लगता है।

हर एक तरह का फुल का माला उपलब्ध है जैसे चाहते है वैसे आप खरीद सकते है बहुत ही सुंदर फुल है बहुत ही अच्छी शॉप है जोकि जहाँ पे फुल की माला गाडियों पे भी चघाया जाता है भगवान पे भी चड़ाया जाता है बहुत ही सुंदर--

वह बहुत ही सुंदर मकान बहुत ही सुंदर जगह पे है ये ऐसे ऐसे जगह पर बहुत ही कम देखने के लिए मकान मिलता है जोकि ये --

जोकि हमारे यहाँ पे सवारी भाई लोग यहाँ पे खड़े है और इस औटो में बैठ कर अपने घर को और रवाना होगे बहुत ही अच्छी यहाँ पे पिक है बहुत ही अच्छी रोड है बहुत ही अच्छी लग रही है।